का शर्ट और बंडी शादी का कपड़ा हर कंपनी का कपड़ा मिलता है।

यहां एक यस बैंक है का ए.टी.एम. है। यहां पे बहुत सारे लोग जाते हैं पैसा उठाने के लिए।

यहाँ पे बहुत सारी बस गाड़ी खड़े रहते हैं और यहाँ पे --

तरह-तरह के सब्जियाँ की खेती होती है और किसान लोग खेती बहुत ही मेहनत से करते है।

डेम मे बहुत ही ज्यादा पानी रहता है डेम का पानी बहुत ज्यादा सफा रहता है।

हर कंपनी के वाशिंग मशीन --